आ रहा है यहां पर एक बहोत बड़ी फोटो है।

सारी चीज है और यहां।

एक बहोत बड़ी चीज है।

इस फोटो में दिख रहा है यहाँ पर--

यहां पर बहोत सारी चीजे हैं।